बिजली के तारे भी दिख रही हैं और बहोत सारी मिट्टी भी दिख रही है।

छत पर पंखे दिख रहे है।

लाइट्स भी दिख रही हैं और आसमान भी दिख रहा है।

ऑन वेयर लर्निंग विद वन लिखा है।

और यहां पे आसमान भी दिख रहा है आसमान में बादल दिख रहे हैं।

और एक ट्रेन भी दिख रही है ट्रेन के बहुत सारे डिब्बे दिख रहे हैं हरे रंग के हैं लाल रंग का है और--

बहोत सारा कैटरिंग का सामान दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पंखे दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर मैट भी दिख रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है नीचे फर्श दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिख रहे हैं और आसमान भी दिख रहे हैं।

पेड़ भी दिख रहे हैं और एक बोर्ड भी दिख रहा है।

यह एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारी मशीनस दिखाई दे रही हैं।

यहां पे गाड़ी दिख रही है।

तबला भी दिख रहा है बहोत सारी लाइट्स दिख रही है।

यहां पे बहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

ये बहोत सारे शॉप दिख रही हैं।

सीढ़ियां दिख रही है और इसके ऊपर अशोक लेलैंड लिखा हुआ है।

ये एक गौशाला दिख रही हैं यहाँ पे बहोत सारी गाये दिख रही हैं।